बहोत बड़े-बड़े काटूनों में सामान रखे गए हैं। बहुत सारे डब्बे में सामान है। बाहर --

बहुत ही बड़ा पोखरा है उस तरफ भी एक पोखरा है जिसमे बहुत सारा पानी है वहा बहुत बड़े -बड़े पेड़ है बहुत ही हरे भरे है वहा छोटे- छोटे पत्थर के टुकड़े है।

एक पाइप एक है। कुछ डब्बे में मोबिल का सामान रखा है। यहाँ बहुत लम्बा सा पाइप है। यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है। यहाॅं बाइक खड़ा --